चारो ओर चट्टाने बहतु ही अच्छी लग रही है हरे-भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे है सामने की ओर एक छोटा सा तालाब भी दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही अच्छा नजारा यहाँ से-- .